यहाँ पर कुछ लाईटे लगी हुई है यहाँ पर पूजन की गई हैं ।

पक्षि की तस्वीरे बनी हुई है।

नीचे की तरफ दो प्लास्टिक की बोटल रखी हुई हैं ।

इस मूर्ति में पीछे की तरफ दीवाल है और इस मूर्ति में बगल की तरफ से एक रास्ता गया हुआ हैं ।

इसमें गुलाब से बने हुए बंच रखे हुए हैं।

सामने की तरफ कुर्सी रखी हुई है इसमें ऊपर की तरफ छत बना हुआ हैं ।